सुंदर तरीके से तैयार कर रहे हैं।

देखी जाए यह तो किसी शॉप की तस्वीर--

फेस भी दिखाई दे रहा है।

जो कि बी_डी वर्ल्ड स्कूल के नाम से मशहूर स्कूल हैं।

और ठीक इसी के सामने दो नीले रंग के ड्रम तो एक देखा जाए तो ब्लैक कलर की--

यहां पर खाली मेन रोड पर लगी--

इन सभी लोगों ने व्हाइट रंग का कुर्ते--

जो कि पता चलता है यह सभी एक मुसलमान--

पोस्ट ऑफिस का डाकखाना लग रहा है।

यह तस्वीर एक ग्राउंड की नज़र आती है जहां पर एक लाल रंग का बेंच नज़र --